ये एक सामने नदी जैसी तलाब जैसा दिख रहा है छोटा सा।

ये एक सामने ऑफिस जैसा है जिसका नाम लिखा है केयर फॉर हेयर यूनिसेक सैलून --

जमीन पर मिट्टी मिट्टी जैसी भी परा बहुत ज्यादा पत्थर पड़--

और एक लेडी साइड में कुछ बोल रही है माइक में टेबल पर सामने रखा हुआ है।

ये कोई पार्क जैसी दिख रही है।

जहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे लगाये हुए है लोहे की है कुछ हरे रंग की है कुछ लाल भी है कुछ काले रंग के है।

एक ऑटो खड़ी हुई है जो कि पेट्रोल डलवा रहा ऑटो में।

नीचे डब्बे पड़े हैं डब्बो में कांच के ग्लासेस भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ दो ठेले जैसे दिख रहे है जो कि बंद पड़े है अभी।